काफी सारी व्हाईट कलर की बोरिया हैं जो गड्डी पे गड्डी बने रखे हुई हैं यहाँ पर काफी लाइट्स भी लगी हुई हैं। ये--